समुंदर बहोत बड़ा दिखाई दे रहा है यहां पे मिट्टी भी दिखाई दे रह है बहुत सारे यहां पे पेड़ पौधे--

खंभे में तीन लगे हुए दिखाई दे रहे है बहुत सारे--

यहां पर गाड़ी वगैरे दिखाई दे रहे हैं अभी एक बाजू में भी घर दिखाई दे रहा--

पिक दिखाई दे रहा है यहां घर पे घर दिखाई दे रहा है यहां पर बहुत सारे व्यक्ति--

दुकान दिखाई दे रहा जैसे यहां पर यहां पर--

यहां एक बहुत बड़ा दुकान खोला जैसे यहां पर है।

मंदिर बना हुआ दिखाई दे रहे हैं यहां पे बहोत सारे अंदर बहोत बड़ा लाइटे लगी हुए यहां पे मूर्ति का बनाया हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारे यहां पर --

खंब खंभा लगा हुआ है लाइट दिखा रहे हैं यहां पर शेर का एक पुतला बनाया गया है।

खड़े है बैठे हुए हैं। लेडीज दिखाई दे रहे हैं। पर्दा लगा हुआ दिखाई दे रहे हैं।

लाइटे लगे हुए झालर दिखाई दे रहे--

यहां एक दो झंडे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।